एक ट्रेक्टर है जो के नीले कलर का और सफ़ेद कलर का है। पीछे पलटीवेटर लगा हुआ है। ऊपर छतरी लगी है जो के नीले कलर की है

ऊपर लाइट लगी हुई है। दिनमे सफ़ेद कलर की लाइट जल रहीं है जिनका फोकस नीचे की ओर है।

ये एक भगवान की मूर्ति है जो कि राधा और कृष्ण जी की है। उनके चारों ओर फूल की मालाएं लगी हुई हैं जो कि रंग बिरंगे फूल हैं पीले कलर के फूल हैं गुलाबी कलर के फूल हैं।

कुछ हरे-भरे भी घाँस है। एअरपोर्ट में एक एरोप्लेन उरा हुआ है जोकि सपेद कलर का है।